और बहोत बड़े कांच के खिड़कियां बनी से--

या फोटो मा एक बहोत बड़े ज्वेलरी के दुकान हरे जे मा बड़े से --

और पूरा संन बन दिखत है यहां चित्र मां--